यहाँ पानी बह रहा है जो सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है| पत्थर हैं जो काले कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ कुछ चट्टानें हैं जिसमें बीच में पानी भरा हुआ है जो काला कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत आदमी है जिन्होंने पहन रखे है जो लाल कलर के दिखाई दे रहे है। उनके पीछे एक घंटी--

एक ने स्वेटर एक ने जर्किन पहनी हुई है जर्किन नील कलर की--

यहाँ-हा एक लड़का एक औरत खड़ी हुई ई-ई है औरत ने साड़ी पहन रखी है जो ओ-ओ नारंगी कलर की दिखाई दे रही है लड़ --

निचे आके काला कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ हरे छोटे-छोटे ए-ए पौधे कुछ हरे क --

हरी कलर की घास कुछ मगरमच्छ पेड़ पौ--

यहाँ पुस्तक की दुकान है यहाँ बहुत सारी पुस्तक राखी हुई है जो सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही हैं । चार आदमी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी जो फ़ोन पे बात कर रहा है उसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी है हा--

यहाँ बहुत सरे लड़के खड़े हुए हैं दो लड़को ने बैग टांग रखा है एक --